पथरे हैं पेड़ हैं पौधे हैं।

और कुछ गाड़ियाँ भी दिख रहे है और इधर खुला आसमान भी है और धुप भी है और पेड़ भी दिख रहे--

और बहोत रंग बिरंग फूलें हैं और परदे भी सजाये हुए हैं।

पेड़ हैं पौधे हैं गर्ल्स हैं बेठी हुई--

है और उधर फूल भी है और उधर पेड़ भी दिख रही है और हरियाली भी है ।